और वो सबके मंगलमय की कामना भी कर रहे हैं।

एक चर्च नुमा स्थान हैँ जहां पर ईशाई धर्म के लोग अपने ईश्वर जिसे जीज़स क्रिस्ट कहते हैं उनकी आराधना करने के लिए आते हैँ।

तस्वीर किसी विद्यालय या किसी कॉलेज की है क्यूंकी यहाँ पर हमे एक यक्ति बैग लिए हुऐ नज़र आ रहा है।